मुझे इसमें एक ऑफिस दिख रहा है।

मुझे इसमें बहोत सारे लोग सजे हुए दिख रहे हैं।

मुझे इस मंदिर में बहोत सुंदर लाइट्स दिख रहीं हैं।

मुझे इसमें एक ट्रक खड़ा हुआ दिख रहा है।

मुझे इसमें बिल्डिंगस बनते हुए दिख रही है।

मुझे मैरिज हॉल के बाहर बहुत सुंदर डेकोरेशन और एक खड़ा हुआ आदमी दिख रहा है।

मुझे इसमें एक स्कूल में प्रतियोगिता होती हुई दिखाई दे रही है।

मुझे इसमें बहोत सारे बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हुए दिख रहे हैं।

मुझे इसमें बेहता हुआ पानी की एक नदी दिख रही है।

मुझे इसमें बहोत सुंदर क्लाउड्स बादल दिख रहे हैं।

मुझे इसमें कांच के टेबल्स और कुर्सियां दिख रही है।

मुझे इस वार्डरूम में खिड़कियां दिख रही है।

मुझे इसमें डोर के बाहर एक खड़ा हुआ व्यक्ति दिख रहा है।

मुझे इसमें एक नृत्य सम्मेलन दिख रहा है।

मुझे इसमें एक सीट वाला गाड़ी पार्क दिख रहा है।